इस चित्र में कई सारे बाल रखी हुई हैं।

इस मॉल का रंग ब्राउन रंग से है।

ऊपर सफेद मंदिर का रंग सफेद दिख रहा है और लाल रंग में कुछ टाइल्सें दिख रही हैं।

पर एक दूर स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है।

और कई सारी लाइटें भी जल रही हैं।

सफेद रंग के कपड़े पहना है।

वे सारी गाड़ियां इधर उधर खड़ी दिख रही हैं।

यह चित्र किसी ऑफिस या लाइब्रेरी का लग रहा है।

सामने जो इमारत दिख रही है वह सफेद रंग में है।

ये जो दीवाले हैं वो सफेद रंग की हैं।

जिसके ऊपर कई सारे तिरंगे लगे हुए हैं।

लाइटें भी जल रही है।